यहां पर बर्थडे पार्टी किसी की सेब्रेट की जा रही है।

बहुत ही सुंदर सा अह सजावट किए गए हैं।

यहां एक मस्जिद दिखाई दे रहा है।

चित्र में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पौध शाला है जिसमें गेंदे के फूल दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक आम का छोटा आम का पेड़ लगा हुआ है।

एक आदमी यहां चलते हुए दिखाई दे रहें हैं।

बगल में एक ट्रंक रखा हुआ है उसमें पानी भर कर जिसमें मछलियां डाली गई हैं।

यहां एक मैदान है यहां बच्चे जूडो कर रहे हैं।

कुर्सियां इसकी गोल्डन कलर में है और मे स्टू भूरे रंग का दिखाई दे रहा--

बगल में नीले रंग की टी शर्ट का एक लड़का बैठा हुआ है।

दरवाजे से एक आंटी एक बच्चे को बाहर लेते हुए दिखाई दे रही है।

एक पंखा दिखाई दे रहा है।

पीछे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं अपनी अपनी कार पे खड़े--

दो गेट दिखाई दे रहे हैं दोनों ही नीले रंग के हैं।

यहां इंदिरा नहर है जो कि लखनऊ में स्थित है।

यहां का वातावरण काफी शुद्ध दिख रहा है।

क जगह हरियाली छाई हुई है।

जो मेज हैं वो व्हाइट कलर के हैं जिसमें एक प फ्लॉवर पॉट भी रखा हुआ है।

और साइड में एक आंटी खड़ी हुई हैं।

ऊपर टंगे हुए हमें लेस चिप्स दिखाई दे रहे--

नीचे तीन डब्बे टॉफी ऑफी के रखे हुए हैं।

पीले रंग का स्कूल बना हुआ है जिसमें लाल रंग से राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज गोरखपुर लिखा हुआ है।

इसमें नौ स्त्रियां हैं दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं।

दुर्गा मईया की पूजा हो रही है।

द सिटी कैफे है जिसके बाहर एक आदमी दिखाई दे रहा है और--

इसमें ओप्पो कंपनी वीवो कंपनी जैसी चीजें भी दिखाई दे रही है और एक आदमी साइकिल चला रहा--

सिस्टीफोर लिखी हुई गुलाबी रंग की पर्ची लगी हुई--

एक लड़की बैठी हुई है उसके आगे सिक्सटी फाइव अंक पे एक लड़की बैठी हुई है।

यहां तीन दौड़ने वाली मशीन दिखाई दे रही हैं।

ये दो बहोत बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हैं।

के बाहर या एक आदमी झाड़ू लगा रहा है।

क्रिश्चियन स्कूल का पता चल रहा है ऊपर क्रिश्चियन साइंस में लगा हुआ है।